पीछे पेड़ है खुला आसमान है लोहे के पिलर खड़े है|

बहुत बड़ा सा ग्राउडं है हरियाई है उसमे फूल पौधे खिल रहे है एक बेंचे पड़ी कहुई है|

बड़ा सा स्टोर है जिसमे एक आदमी बैठा है|

एक फुटबॉल का मैदान है जहा पर कोर्ट बना हुआ है|

बहुत सी औरते खड़ी हुई है कुछ मोमबत्ती से वो दिये जला रही है कुछ हाथो मे मोमबत्ती है सबके--